दूर से बहुत सारी कार गाड़ियाँ दिख रही है आस-पास सभी जगह पेड़-पौधे भी नजर आ रहे है।

वहां एक फुव्वारा है पानी के अंदर और सभी लोग इसका लुफ्त उठा रहे है।

यहां भी छोटी-छोटी पत्ती भी दिख रही हैं।